इसके आगे कई सामान रखे है बगल में सड़क जा रही है किनारे की साइड खम्भे लगे हुए है भवन दिखाई दे रही हैं पेड़ नज़र आ रहे है ।

इस फोटो में देख सकते है जे एक चार सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे देख सकते है जे--

ये फोटो में आप देख सकते है की चारों तरफ पहाड़ --

त खुला आसमान बीचो बिच बड़े-बड़े हरे-हरे पेड़ तथा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं तो एक व्यक्ति का हाथ नज़र आ रहा है।